यहाँ आना लोगो को अच्छा लगता है क्यूंकि ए सब प्रकृति से जोड़ी होती है ।

यहाँ पर लोगो के बाल बहुत अच्छी तरह से काटा जाता है |

ए कारण लोगो को जाने में कोई कठिनाइयाँ नही --